यहां पर हमें कुछ फल दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के है।

मिट्टी का कलर हमें दिख रहा है ब्राउन --

हमें बहोत सारी बिल्डिंग्स दिख रही है कु--

यहां पर हमे व्हाईट कलर की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

नाव पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

कुछ पेपर्स लगे हुए दिख रहे हैं व्हाइट पिंक कलर के बोर्ड पर ब्लैक कलर दी--

रेड व्हाइट कलर की बस दिखाई दे रही--

ये इसमें कि हमें एयरटेल लिखा हुआ दिख रहा--